यह पहाड़ बहुत ऊंचाई पे है।

और कुछ लोग डंडे से आते हैं।

बहुत से कुर्सी लगे हुए है।

कुरकुरे कुरकुरे के सभी वैरायटी इस दुकान में मिलते है यह दुकानदार बहुत अच्छे --

यह कोई बाजार है। यहां बहुत सारे फूल बेच रहे है।

यह जंगल है जंगल में बहोत मोटे-मोटे पेड़ दिख रहे हैं।

ऑफिस बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा रखा ग --

एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमे एक औरत का फ़ोटो चिपकाया हुआ है।